ये एक रोड है जिसका रंग सिलेटी है जहाँ पर एक बाइक है जिसपे दो लोग बैठे हुएं हैं।

यहाँ पर कई सारे घने पेड़ भी लगे हुए --

और रोड पे बाइके चल रहीं हैं और फुटपाथ पे लोग भी खड़े हैं।

यहाँ पर अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके पीछे कई सारे पेड़ भी लगे हु --

जो पथरीली है और यहाँ पर वो फुटबॉल वाला नेट लगा --

और उसके पास में लाइटे लगी हुईं हैं जो की अ --

अ पेड़ भी लगे हैं।

यहाँ पर एक काली चेयर रखी हुई है।

ये एक हॉल है जहाँ पे कई सारी चेयर पड़ी हुईं हैं।

जहाँ पर दो पोस्टर लगे हुए हैं जो ईशा मसीह के है।

सामने मुझे एक रोड दिख रही है रोड का रंग काला है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है।

एक टेबल रखी हुई है जिसपर सफ़ेद रंग का कपड़ा पड़ा हुआ--

और एक घर बना हुआ है जिसक गेट खुला हुआ हैं ।

यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है जो लोहे का है।

जिसको गुब्बारों से सजाया गया है गुब्बारें सफ़ेद और लाल रंग के हैं।

ये गेट के अ सामने ह सजा हुआ है जो बु --

अ भूरी घास है और थोड़ी हरी घास भी है।